यहाँ पे ये देखिये यहाँ पे ये चेयर टेबल चेयर लगी हुई है जो लोग है यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आये लंच करने के लिए आये हुये है।

जो की सनसेट के साथ फोटो निकलवा रहे हैं और ये सनसेट की पि ये सनसेट है जोकि काफी प्यारा लग रहा है और वहीं पे आप देख सकते हैं कि कितने पीछे ये पेड़ वगैर लगे हुए हैं घास वगैरा है झाडिया है।

ये हॉस्पिटल की फोटो है आप देख सकते हैं यहां पर यह डॉक्टर सभी डॉक्टर लोग है जो किसी सेल्फी ले रहे हैं।

यहाँ पे देखीये जो स्कूल में सिखाए जाते बेस्ड ओन सी_बी_एस_ई एजुकेशन है डांस हो रहा है ये जो इंटरनेशनल स्कूल है जो की औरंगाबाद में स्थित है देखो यह बच्चे डांस करते हुए नजर आ रहे है।

या फिर पैर छत डालने के लिए पहले सेटिंग लगाई जाती है उसके बाद में उसपे लोहा बिछाया जाता है जो कि ये दिख रहा है लोहे पे के ऊपर से माल डाला--

ये देखिए यहाँ पे ये छत का काम चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे मजदूर है जो कि कम कर रहे हैं ये देखिए ये नीचे से सीडी से आता है और यहाँ पे इसमें माल लेके आ रहा है यहाँ पर काफी सारे मजदूर देखिये सभी मजदूर अपना-अपना काम कर रहे हैं।

कैसे क्या करे यहा पे देखिये सभी बच्चे अपने बड़ी लगन से कर रहे है देखो जो छोटे बच्चे होते हैं और ये कुछ भी काम दे दो आप बहुत ही अच्छे तरीके से करते है वो।

प्रिपरेशन वगैरा कुछ चल रहे हैं यहां पे ये मंदिर है यहां पे प्रवचन चल रही है देखिए यहां पे काफी सारी महिलाएं आयी हुई है जो कि यहां पे प्रच प्रवचन सुनने के लिए आयी हुई है यहाँ पे एक गुरु बैठे है जो की यहाँ पे प्रवचन--

जो कि महाराष्ट्र की औरंगाबाद यहां पे बच्चे देखिये यहां पर खरेदी कर रहे हैं।

यहा पे आप देख सकते हैं ये जो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है जो कि कार्यालय है इस कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं काफी सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं और यहां पर ये पुलिस की जीप खड़ी हुई है यहाँ पे देख सकते हैं यहां पे एक पुलिसमैन भी है।